chimera में writing commands ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम कमांड्स टाइप करेंगे display को परमाणुओं में बदलने के लिए
ribbons को दर्शाने और छिपाने के लिए
amino acid residues का रंग बदलने के लिए
एक एक residues को लेबल करने के लिए
solvent अणुओं को हटाने के लिए और इमेज को भिन्नभिन्न फॉर्मेट में सेव करने के लिए
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको स्नातक स्तर की biochemistry का ज्ञान होना चाहिए
structural biology और chimera interface से अवश्य परिचित होने चाहियें
संबधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं ubuntu linux ओ एस वर्जन 1404 और chimera वर्जन 1102 का उपयोग कर रही हूँ
mozilla firefox ब्राउज़र 420 और एक कार्यकारी इन्टरनेट कनेक्शन
chimera विंडो को खोलने के लिए chimera आइकॉन पर डबल क्लिक करें
graphics window को खोलने के लिए lightning bolt icon पर क्लिक करें
इस ट्यूटोरियल में हम दर्शाएंगे कि संरचना में बदलाव लाने के लिए commands को कैसे प्रयोग करना है
favorites मेनू का प्रयोग करके command line खोलें
chimera विंडो के तल में एक command text box दिखाई देता है
menus से होने वाली टास्कस को commands द्वारा किया जा सकता है
chimera commands के बारे में
chimera commands command line पर प्रविष्ट किये जाते हैं
semicolon सेपरेटर से विभिन्न commands एक लाइन में संयुक्त किये जा सकते हैं
command को निष्पादित करने के लिए enter key दबाएँ
पहले वाले commands पर command history से जाया जा सकता है
commands की अधिक जानकारी दिए हुए लिंक पर दर्शायी गयी है
chimera विंडो पर वापस जाएँ आइये अब एक command टाइप करके leucine zipper का एक मॉडल खोलते हैं
command एक command वर्ड से शुरू होता है
command line टेक्स्ट बॉक्स पर open space 1zik टाइप करें
आपको एक एक कार्यकारी इन्टरनेट कनेक्शन की जरुरत होती है
command को निष्पादित करने के लिए enter दबाएँ
संरचना स्क्रीन पर दिखाई देती है
ribbons डिस्प्ले को atoms में बदलने के लिए command line text box में टाइप करें: the command word display और एंटर दबाएँ
अब हमारे पास atoms display में protein की संरचना है
ये संरचना आंशिक रूप से ribbons की तरह प्रदर्शित होती है
ribbons छुपाने के लिए – टाइप करें wave symbol जो tilda की तरह भी जाना जाता है उसके बाद command वर्ड ribbon टाइप करें
tilda के साथ कमांड रिवर्स फंक्शन को दिखाता है
यहाँ संकेत tilda इसके बाद ribbon keyword ribbons को छुपा देता है
हम atoms bonds surfaces को रंगीन बनाने के लिए color command का उपयोग कर सकते हैं
उदहारण के लिए सारे leucines का रंग बदलने के लिए टाइप करें: color space yellow space colon और इसके बाद amino acid के लिए तीन अक्षर का लघु रूप
leucine के लिए मैं टाइप करुँगी leu
यहाँ color yellow argument के साथ command word है और संरचना के सारे leucines टारगेट है
यदि आप टारगेट का विशेष विवरण नहीं देते हैं तो पूरी संरचना पीले रंग में रंगी होगी
panel का निरिक्षण करें सारे leucines अब पीले रंग में हैं
हम एक विशेष स्थान के amino acid को एक खास रंग से रंग सकते हैं
उदहारण के लिए histidine का रंग बदलने के लिए जो की chain b पर स्थान 18 पर उपस्थित है टाइप करें:
पेनल का निरिक्षण करें histidine अब लाल हो गया है
पूरी संरचना के डिस्प्ले को cpk spacefill में बदलने के लिए rep टाइप करें
rep कीवर्ड represent का संक्षिप्त रूप है rep space sphere; एंटर दबाएँ
पेनल का निरिक्षण करें
संरचना को stick डिस्प्ले पर वापस लाने के लिए पुन्हा टाइप करें rep space stick और एंटर दबाएँ
solvent अणुओं को संरचना से छुपाने के लिए टाइप करें del मिटाने के लिए space solvent
चुनाव के लिए residues को सक्रिय करने के लिए वर्ड select command का उपयोग करें
command line टेक्स्ट बॉक्स पर टाइप करें select space colon उसके बाद रेज़िडियु की संख्या एवं chain
उदहारण के लिए chain b पर स्थान 28 पर उपस्थित lysine को सक्रिय करने के लिए टाइप करें select space colon उसके बाद 28 dot b एंटर दबाएँ
अब चुने हुए residue का label दिखाने के लिए टाइप करें rlabel space sel
पेनल का निरिक्षण करें चुने हुए residue का residue label प्रदर्शित होता है
पहले चुने हुए residue को अचयनित करने के लिए select command पाने के लिए अप एरो की को दबाएँ
command की शुरुआत में tilda symbol टाइप करें एंटर दबाएँ
help menu में keywords और command index की सूची उपलब्ध है
help menu पर क्लिक करें मेनू में नीचे जाएँ और commands index पर क्लिक करें
commands लिखने के लिए keywords की सूची के साथ एक webpage खुलता है
chimera विंडो पर वापस जाएँ
यदि आप पृष्ठदृश्य यानि बैकग्राउंड के रंग को काले से नीला करना चाहते हैं टाइप करें: background space solid space blue
अब पेनल का रंग नीला है
command का पुनरावृत्त करने के लिए command line के दाहिनी तरफ उपस्थित काले त्रिकोण पर क्लिक करें
command history पहले उपयोग किये हुए commands को सूचीबद्ध करती है
commands command पर क्लिक करके फिर से निष्पादित किये जा सकते हैं
command line छुपाने के लिए ड्रापडाउन मेनू में hide command line विकल्प पर क्लिक करें
आपकी बनायी हुई संरचना को save करने के अनेक विकल्प होते हैं file menu को खोलें
आप ये कर सकते हैं: restore a session save a session
इमेज को jpeg या png फॉर्मेट में सेव करें
इमेज को pdb या mol2 फाइल्स में सेव करें दृश्य इत्यादि को export करें
दर्शाने के लिए मैं इमेज को jpeg फॉर्मेट में सेव करती हूँ
save image विकल्प पर क्लिक करें एक save image डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल लोकेशन के लिए डेस्कटॉप को चुनें
file name को 1zik की तरह टाइप करें file type को jpeg की तरह चुनें
इमेज के आकार को अपनी जरुरत के हिसाब से निश्चित करें
दर्शाने के लिए मैं चौड़ाई को 800 और ऊंचाई को 600 टाइप करुँगी
save बटन पर क्लिक करें इमेज डेस्कटॉप पर 1zikjpg में सेव होती है
सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा है
इस ट्यूटोरियल में हमने कमांड्स टाइप किये display को atoms में बदलने के लिए
ribbons को दर्शाने और छुपाने के लिए
amino acid residues का रंग बदलने के लिए
अलगअलग residues को लेबल करने के लिए
solvent molecules को हटाने के लिए इमेज को भिन्नभिन्न फॉर्मेट में सेव करने के लिए
अब assignment के लिए
डिस्प्ले को atoms में बदलें और ribbons को छुपायें
सारे histidine residues को हरे रंग में रंगें
solvent molecules को हटायें और इमेज को jpeg फॉर्मेट में सेव करें
आपका पूरा किया असाइनमेंट निम्न प्रकार दिखना चाहिए
निम्न लिंक का वीडीयो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और उनको सर्टिफिकेट देती है जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की वित्तीय सहायता nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा दी गयी है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए हुए लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद